ढेर सारे कमरे हैं और वो जो है फुल्ली ए.सी. रहित जो है होटल है यहाँ जो गर्मी के मौसम में जो है कोई दिक्कत नहीं होती है और पीछे में जो है बहुत सारे दुकान किये हुए हैं। ये होटल --

ये रेलवे स्टेशन के परिसर का ये कैंपस है ।